दुकान के अंदर दो लोग खड़े हुए है दीवारे पीली और सफेद रंग से रंगी हुई है छत पर पंखा है।

कि दुकान का नाम हर--

गुलाबी व सफेद रंग का है।

दृश्य में हमें एक इमारत दिखाई पड़ती है।

हरे रंग की पट्टी सफेद रंग की पट्टी ऊपर बनी हुई है।

इसमें से कुछ लोग अस्पताल में से बाहर निकल रहे हैं।

प्रकार का उपकरण है व उसने नीले रंग का मास्क लगा रखा है।

इस दृश्य में हम कई सारी किताबें देख सकते हैं सामने की तरफ कुछ टेडी बेयर रखे हुए हैं।

ऐसा लग ऐस यह एक हार्डवेयर की दुकान है।

कुछ संगीत वाद्य यंत्र शाम ऊपर की तरफ संगीत वाद्य यंत्रों का रंग भुरे रंग का क्रिमी रंग का वह नीचे की तरफ एक गिटार रखा हुआ है सामने की तरफ एक मेज रखी हुई है।

इस दृश्य में हमें हॉल देख सकते हैं जिसमें कई सारे व्यक्ति एकत्रित हैं।